यह एक जंगल का दृश्य दिखाया जा रहा है जहाँ एक हिरन है और उसके साथ एक और जानवर है और आस पास बहोत सारे हरे भडे पेर हैं।

इस होटल में अच्छी लाइटिंग की गई है बहोत सारे लोग यहां बैठे और बहोत सारे लोग चल रहे है।

दीवाल के आसपास बहोत सारे लकड़ी के सामान है और उधर एक घर भी बना है।

एक गमले की दुकान जहां बहोत सारे व्हाइट कलर के गमला रखा हुआ है यहां आस पास बहुत सारे पेड़ भी रखे हुए हैं।